और शेड है और बीच मे से और पटरी जैसा गया हुआ है और यहाँ पे काफी हरयाली भी है और एक बिल्डिंग है जो कि येलो कलर की है और उसके ऊपर से रेलिंग जैसी गई हुई है ब्लू कलर की।

हाँ एक अ बिल्डिंग के ऊपर एक अ मैरून कलर का गेट बना हुआ है।

काफी दरख्त लगी है काफी दूर तक का नज़ारा दिख रहा है बिल्डिंगे दिख रही हैं घर बने हुआ दिख रहे हैं आसमान है जोकि बिलकुल साफ है यह काफी सारी चट्टान है बहुत हरा-भरा और बहुत प्यारा व्यू है ये।

यहाँ पे एक बहोत हरा-भरा खेत है| यहाँ पे काफी घास और काफी हरियाली है और काफी बड़े-बड़े पेड़ और बिलडिंग्स यहाँ पे दिख रही है पहाड़ दिख रहे हैं और ये बहोत दूर तक का नजारा दिख रहा है।

यहां पे अ कॉलेज का एक शटर वाला गेट है।

काफी हरियाली है और यहाँ पे काफी सारे लोग हैं काफी लोगो की यहाँ भीड़ है और इसके अ पास एक नदी जैसा है जो बारिश के पानी से बनी है।

अ ये एक ग्राउण्ड जैसा दिख रहा है एक जंगल जैसा दिख रहा है यहाँ पे और यहाँ काफी हरियाली है पहाड़ है और एक खरगोश जो है वो खेतों मे से कुछ खा रहा है हरियाली खा रहा है ये |

ये काफी अच्छी है देखने में ये दो फ्लोर की बिलडिंग है और काफी बड़े-बड़े दरख़्त यहाँ पे है इसके आस-पास।